इस फोटो में दिख रहा है कि यह एक दुकान है इसमें बहुत सारे साड़ियां भी है जो अलग अलग कलर की है ।

इस फोटो में बहुत सारे पेर दिख रहा हैं।

इस फोटो में एक मकान दिख रहा है इसका कलर स्लेटी कलर है और नीचे डी_जे लगा हुआ है।

बहुत सारा चेयर लगा हुआ जिसका कलर कॉफी कलर है।

इस फोटो में बहोत सारे आदमी है और अंधेरा दिख रहा है आसमान में भी काला दिख रहा है।

बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं एक बड़ा मंदिर है और सारा छोटा छोटा मंदिर दिख रहा है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक गेट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बाबा करीना बाजार और लिखा हुआ है फ्री होम डिलीवरी ।

सीलिंग में बहोत सा लाइट लगा है लाइट का कलर व्हाइट है।

इस फोटो में एक रोड दिख रहा है रोड पर दो टीचर है।

पर्दा भी लगा हुआ है पर्दा का कलर कॉफी और वाइट है।

मकान दिख रहा है जिसका कलर सफ़ेद और हरा है।

इन्होंने स्कैनर लगा रखा हुआ है और पानी का बोतल भी दिख रहा है।